ये कोम्प्लेक्स भी है छोटी सी गेट का कलर है पिंक कलर का टाइल्स का कलर है ब्लैक ।

ये एक हॉल की नाईट का तस्वीर है। जिसके अंदर लाइटस जली हुई है।

जोकि मुस्लिम स्टाइल में बना हुआ है जिसका कलर है मिट्टी कलर का जिसमें अगल-बगल घांस लगे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग है जिस-जिसपे थ्री पोल्स लगे हुए हैं जो मिट्टी क्लर के पोल्स है। वाइट कलर के भी पोल्स हैं।

ये एक एस करके व्यू है | तीन-तीन करके एस बना हुआ है| कांच का है जो लाइट जल रहा है एल_इ_डी लाइट--

छपाई नहीं हुआ है। ये टेग दिख रहा --

ये टाइल्स लगी हुई है। नीचे बिल्कुल नीचे टैंट लगा है। रेड लाइट की टल्स है। ऊपर एक पंखा --